ग्राउंड के इधर सार साइड में एक हरियाली दार ग्राउंड है वहां पर पौधे लगे हुए हैं और पेड़ लगे हुए हैं।